इस यहाँ पास पूरा स्वच्छ वातावरण मिलता है।

बहुत दूर-दूर से जो शिपें आती हैं उनको यहाँ पास अनलोड किया जाता है।

पेड़ो की डेगाल और पतों को जैसे परछाई अच्छे से नही आ पाती है जो कील --

एक छोटा-सा एक कॉफ़ी शॉप है इसका कोफ --

ये द्वारा ओपन की गई है जहाँ पास बहुत ही अनेक प्रकार के फ्रूट्स बेचे जाते हैं।

उसके साइड में एक बाइसिकल है और उसके सामने उसके साइड में एक गाड़ी खड़ी हुई है।

ये दो पिज़्ज़ा और उनके साथ चाय --

बहुत ही प्यारी दिख रही है उसके साइड में ही एक ग्लोब रखा गया है।

जिस गांव में एक छोटा-सा बस स्टॉप है।

अब ये ओन रोड के लिए रेडी है जो अब --

लग लगाया गया है उसके सामने एक पार्किंग विथ एंट्रेंस गेट है जो एयरपोर्ट का है।

ये एक शोरूम है। जो रेडीमेड कपड़ो को सेल किया जाता है। कॉम्बो शोरूम है। इस पर --

इस मस्जिद को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसके ऊपर कुम्भ लग हुआ है।

इस शॉप का अभी-अभी इनॉगरेट किया गया है इस शॉप का नाम है फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन ।